जो ग्रीन कलर के हैं और एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जो सीमेंट कलर का है और क्रीम कलर का है और कुछ टावरें दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में मुझे एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है और एक घर दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है और क्रीम कलर का है।

और बैनर दिखाई दे रहा है जो बैंगनी कलर का है जिसमे कुछ लिखा हुआ है जो वाइट कलर से लिखा हुआ है।

और कुछ लाइटे दिखाई दे रही है जो वाइट कलर है और ग्रीन कलर की है और कुछ मोमबत्ती दिखाई दे रहे है।

इसमें बोहोत सारे लाइटे दिखाई दे रही है जो पिंक कलर की है और वाइट कलर की दिखाई दे रही है।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

लड़का है और एक आदमी दिखाई दे रहा है जो बेठा हुआ है वो वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है।

इस इमेज में मुझे एक मशीन दिखाई दे रहा है जो ऑरेंज कलर का है और ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।

और एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का हैं।

और एक छोटा सा पूल दिखाई दे रहा है जिसमे बोहोत सारा पानी भरा हुआ है।

इसमें बहोत सारी खिड़कीयाए दिखाई दे रही है और बहोत सारे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

यह अ ब्लैक कलर की है और एक पर्दा दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है और कारपेट दिखाई दे रहा है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है और ग्रीन कलर का है।

इस इमेज़ में मुझे एक बड़ा सा ऑफिस दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है जिसमें बहोत सारी लाइटें दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है।

अ कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं जो व्हाइट कलर के हैं औ कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं।

इस इमेज मे मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है और कुछ कार दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है और ब्लैक कलर की और रेड कलर की है।

और दीवार दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है जिसमें एक खिड़की दिखाई दे रहा है।

और कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं और फर्श दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है।

दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है जिसमें रेड कलर से और ब्लैक कलर से कुछ लिखा हुआ हैं।

अब कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो बैठे हुए हैं और कुछ कारपेट दिखाई दे रहे हैं जो बैंगनी कलर का हैं और पिंक कलर का हैं --

इसमें रिबन लगा हुआ है जो वाइट कलर का है और येल्लो कलर का है और कुछ लाइटे दिखाई दे रही है जो येल्लो कलर की है और वाइट कलर की है और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज मुझे एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है और वाइट कलर का है।

और बहुत सारे बलूंस दिखाई दे रहे हैं जो रेड कलर के है और ब्लू कलर के है और बैंगनी कलर के है और येलो कलर के दिखाई दे रहे है।

इसमें कांच लगा हुआ है जो वाइट कलर का है और एक बैनर दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है जिसमें व्हाइट कलर से कुछ लिखा हुआ है।